जिसके बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ है उस पर एक आदमी--

यहां हम देख सकते हैं कि--

जहां पर काफी सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहे है और यहां पर ब्रेड --

पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो हरे रंग के हैं।

और इसके पीछे पानी जैसा नजर आ रहा है।

की जाती है। यहां परी के नाम से है।

हरे रंग की रस्सी डाली हुई है और सामने चारा रखा हुआ है। गाय के दो तीखे सिंघ भी--

इसके दरवाजे हरे रंग के हैं और इसके ऊपर--

और बाहर सारा कच्चा फर्श नजर--

यहां हम देख सकते हैं की यह एक--

यहां हम देख सकते है कि एक बेकरी है।

और अंदर केक नजर आ रहे--

और वह अपने आप को आइने में देख रहा है।

नजर आ रहा है जो हरे रंग का है।

यहां हम देख सकते हैं कि--

होटल का कमरा नजर आ रहा है जहां पर भूरे रंग का सोफा लगा हुआ है।

बहोत बड़ा शोरूम लग रहा है।

और कुछ पौधे थोड़े लाइट ग्रीन कलर के है। यहां पर--

रखा हुआ है और एक आदमी भी--

और ऊपर आसमान में बादल छाए हुए नजर आ रहे है।

टेबल दो कुर्सियां और एक बड़ी कुर्सी लगी हुई है।

बाहर की साइड काले रंग का सोफा लगा हुआ है और यहां पर सीलिंग भी--

यहां पर हमें एक बेडरूम दिख रहा है।

यहाँ पर हमें एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

लंबी सी गैलरी हम यहां देख सकते है।